और एक लोहे का गेट भी है।

और बहोत सारी बड़ी बड़ी लाइट भी लगी हुई है।

एक व्यक्ति हाथ में किताब लिए हुए हैं।

व्यक्ति के हाथ में झाड़ू भी है।

और दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

और बहोत सारे व्यक्ति भी खड़े हुए हैं।

इस फोटो में बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए है।

इस फोटो में बहुत बड़ा मैदान है।

और एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है।

और एक बहोत बड़ी प्लास्टिक की ट्रे भी है।

और लकड़ी की बल्ली भी है।